और कैमरामैंन लोग फोटो खीच रहे हैं।

यह नाला एक खेत --

जिसमें तीन डॉक्टर बैठते हैं।

और एक टोटो से --

टोल भरने के लिए नही आया है।

केजी तक का ही क्लास है।

यहाँ कुछ कूड़े को जलाया गया है जिस --

जहां पर सैंटा क्लाउस --

यहाँ पर इनको मार्बल से बनाया गया है।

चित्र में एक एक्सिस बैंक --

जिसमें बहोत ही प्रकार के --

और यहाँ स्टेज पे --